यहाँ पर एक बहोत सुंदर नजारा है यहाँ पर बहोत सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है।

दिन भी है और इसमें बहुत सारे--

यहां पर बहुत सारे लोग हैं और यहां पर एक मकान है यहां पर कुछ लोग ट्रैक्टर पर

यहां पर बहोत सारी बसे रुकी हुई हैं।

यह एक बहोत बड़ा एरिया है यहां पर बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही है और यहां पर--

यहां पर एक बहोत बड़े शॉप दिखाई दे रही है और यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहां पर दो होटल दिखाई दे रहे हैं।